यहाँ हरा भरा जंगल हैऔर जंगल में पांच पर्यटक घूम रहे हैजो बैग लेके यहाँ का मनोरन्जस देखने निकल पड़े है और मस्ती कर रहे है ।

यहाँ पर जंगल है जंगल के बीचो बीच सड़क है और अलग बगल खूब घने और लम्बे पड़े है जो बहुत ही मन भावन हैं।

यहां पर फूलों की दुकान है जिसमें फूलों की माला बनाकर तैयार किया गया है।

कुछ रंग- बिरंगे बॉक्सेस हैं।